सारा इटा झड़ गया है।

ऊपर में पंख लगा हुआ भी नजर आ रहा है।

कुछ बड़े बच्चे सामने में भी बैठे हुए हैं।

पुआल दिख रहा है बहुत सारा।

पोस्टर में अलग अलग बाइक दिखाई दे रहा है।

इसके बीच में बहुत सारा पिलर भी है।

इस फोटो में एक दुकान नजर आ रहा है।

इस फोटो में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

एयर भी दिखाई दे रहा है रेड कलर का।

एक कंप्यूटर भी दिखाई दे रहा है।

कुछ कपड़े टांगें हुए भी दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक ठो नर्सरी नजर आ रहा है।

जो कि लातेहार में है।

इसके बोर्ड पे सदाबहार नर्सरी लातेहार लिखा हुआ है।

पीछे में डेकोरेशन हुआ है।

पीछे में बहुत सारा पेड़ पौधा नजर आ रहा है।

बहुत सारा डाईना आगे पीछे में रखा हुआ हैं।

एक आदमी भी दिख रहा है बैठा हुआ कुर्सी पर।

इसमें बहुत सारे गाड़ियां चल रहे हैं।

और उसके बगल में पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

बाहर बहोत सारा बाइक पार्क किया हुआ है।